रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पे ढेर सारे लगाए गए हैं।

यहां पे बड़े बड़े लोहे की चीजें रखी गई है।

इस तस्वीर में एक मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और इसके पास ही में कुछ फूल भी दिखाई दे रहे हैं जो रेड येलो पिंक ब्लू कलर के हैं।

कूप आती भी दिखाई दे रही हैं।

ब्राउन एंड व्हाइट कलर में--

यह नीचे एक चीज पे यह बिठाया गया है यह मूर्ति।

चेयर पे बैठे हुए नजर आ रहे है।

उसके पास एक कपड़ा दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा जो ब्लू कलर का है।

घर का छत बनाया जा रहा है।

रेड कलर के है उसके बगल में सीमेंट दिखाई दे रहा है।

यहां पे एसबीआई का एक बैंक दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक छतरी लगा हुआ है।

रोड के बगल में न्यू फर्नीचर वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसमें तीन शटर दिखाई दे रहे हैं।

द उसके नीचे का द कंफर्ट मार्कर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड लिखा हुआ नजर आ रहा है।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

व्हाइट कलर का है।

और यहां पे एक बहुत बड़ी बाउंड्री भी मारी गई है।

उसके बगल में लाल लाल कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही है।

कुछ ब्ल्यू कुछ ग्रीन कुछ ऑरेंज और कुछ पिंक कलर की है।

कमरे में ढेर सारे कुर्सियां दिखाई दे रही हैं उनके बगल में बीच में एक सोफा लगा हुआ नजर आ रहा है।

और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक की चीजें मिलती हैं।

यहां पे एक पंडित जी भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे ढेर सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे कुछ बांस रखी हुई भी दिखाई दे रही है कुछ पटरी भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसके नीचे एंड होम केयर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और इसके बगल मे एक हाथ दिखाई दे रहा है जो उसने दो इटे पकडे हुए है।

यहां पर कुछ डम्बल --

ऊपर में कुछ लाइटें भी लगाई गई हैं।

हवा भरे हुए होते हैं।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

और उसके सूड पे एक इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा है।

और कुछ बांस भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

उसने सैलुन वाले कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे ढेर सारी मिठाई रखे गए हैं।

और यहां पे कुछ बेल्टे भी रखी हुई नजर आ रही है।

और ऊपर में ढेर सारी चीज ढेर सारी लाइटें लगाई गई हैं।

कुछ कार्टून्स दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा सा बाल्टी भी दिखाई दे रहा है यह सब ब्लू कलर के है।

यहां पे एक पंखा लगा हुआ नजर आ रहा है।

और यहां पे नीचे में एक बैठा हुआ है।